मात्रा के अंदर हमें जो है फेविकोल जो है दिख रहा है जिसके अलग अलग डब्बों में बांट रखा बहुत सारी चीजें --

जैसे कुछ और मशीनें वगैरा आपको दिखाई दे रहीं है ऐसा लगता है की किसी जो है बड़ी कंप बड़ी दुकान --

फोटो प्रिंट का काम करती है जैसे कि मतलब टी शर्ट पे जो है आपकी फोटो बना सकती है मतलब फोटो पे कॉपी पेस्ट कर सकती है पिल्लोस पे --

यह फोटो किसी लकड़ी किसी फेविकोल और ऐसी जगह की है जो हमें सामने बहोत सारी जो शेल्फ है उसके अंदर अलग अलग --